ये लोग आए है नजर आ --

ये देख रहे यहाँ पंखे की शॉप नजर आ रही है नीचे पत्थर नजर आ रहे ह--

यहाँ पर नजर आ रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

समझ के लेकर बॉटल मे डाल रहे हैं नजर आ रहे हैं ऊपर --

इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है --

यहा पर --

यहा पर कई सारी चीजे है लाइट है ।

यहां पर उसे फ्रिज नजर आ रहा है। दवाई की बॉटल नजर आ रही है। विंडो नजर आ रहा है। यहां पर एक--

यहा पर एक दिख रहा है यहा पर कई सारे लोग नजर आ रहे है --

बड़ी बड़ी बिल्डिंगे नजर आ रही है बिल्डिंगो की विंडो नजर आ रही है।

यहा पर मेना नजर आ रहे है यहा पर है।

यहा पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे है पथरो के अंदर दो आदमी है।

पहाड़ी इलाका नजर आ रहा है जंगली झाडे नजर आ रहे है।

यहा पर एक घर नजर आ रहा है यहा पर एक --

सोसाइटी नजर आ रह है और लाइट नजर आ रही है कैमरे नजर आ रहे है डोर नजर आ रहा--

पानी कि बॉटल रखी हुई है यहां पेपर रखे हुए हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं एक--

यहां पर एक सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है यहां पर दिख रही है।

यहां पर जैसे कार दिख रही है यहां पर कई सारी बाइक रुकी हुई है कार रुकी हुई है यहां पर मात्र गाड़ी रुकी हुई है।

यहा पर बुक्स जेसे कई नजर आ रहे है बड़े बड़े नजर आ रहे है।

यहा पर एक स्वीमिंग पुल नजर आ रहा है यहा फ्रिज रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी चीजें नजर आ रही है यहां पर--